इनके पश्चात ओसकी --

टोर रूम में कुछ मोटरसाइकिल भी रखी हुईं हैं।

ता इस विडिओ में शामने एक जल सरोवर है वो जल सरोवर में --

वह बहोत सुन्दर नावें हैं।

इस वीडियो मे एक नदी किनारे एक ओवर ब्रिज बना हुआ है और एक --

और वो है जे जलाषय में जलिय पौधे भी --

ताली हुई है जिससे व्यक्तियों को --

एक सामने द सिटी कैफै --

दिख रहे हैं ओवहे --

माँ सरस्वती देवी की प्रतिमा का कैलेंडर टंगा हुआ है।

तैनिय का एक हॉल बना हुआ है।

ऑटो टैक्सी का शोरूम है।

इस वीडियो में एक दुकान का --